छात्रावास है जो की यहाँ पे --

जो की यहाँ बहुत दूर-दूर से लोग ये डी.जे. बाजा करने के लिए आते हैं क्योकि यहाँ कम पैसा में ही डी.जे. बाजा हो जाता है और यहाँ पे --

समान मिलते हैं जो की यहाँ पे बहुत दूर-दूर से लोग खरीदने आते हैं और बहुत अच्छे और सस्ते समान मिल --

कुर्ता का दिखाया गया है जो की यह कुर्ता --

और इसको खरीदने के लिए बहुत दूर-दूर से लोग आते हैं।

और मस्त है और यह फिगर --

जो की दिखने में काफी सुंदर और अच्छा है यह कोई --

बहुत बड़ा और बहुत सुन्दर चेयर भी लगे हैं ।